कुछ लगा रखी है कुछ पत्ते पीले भी दिखाई पड़ते हैं।

इस फोटो में एक मेज पर एक सफेद कलर की प्लेट रखी है।

इस तखत पर कुछ मिठाइयां के डिब्बे रख रखे हैं ज्यादातर इस मिठाइयों में शामपापड़ी दिखाई पड़ती है।

इस फोटो में सामने की साइड तीन लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने की साइड एक दुकान दिखाई दे रही है।

पीछे की साइड एक लोहे की बड़ी जाली है।

बाहर की साइड दो बाईकें भी खड़ी दिखाई दे रही हैं।

जैसे पियानो और भी तबले और कुछ सामान भी संगीत का रखा है।

बाहर की साइड में एक पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा है और दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।